और दूसरी साइड पे सब घर और बिल्डिंग बड़ी दिख रही है।

दो एल शेप का है और बीच में एक बड़ी --

फैंसी भी नजर आ रही है।

और बाहर कुर्सी भी बहोत सारी--

कुछ पेपर पे लिखता हुआ नजर आ रहा है इस --

और बहोत सारी बॉटल भी दिख रही है दवाई की।

इस चित्र में एक फूल नजर आ रहा है।

इसका रंग व्हाइट और लाल है।

जिसका रंग नीला है और एक छोटी सी अह वाइट --

इस चित्र में दो लड़के नजर आ रहे हैं।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

दोनों आदमी नीचे जमीन पे बैठे हुए हैं और--

केक सब मिल रहा है और बाहर की ओर उन्होंने --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

इसके पीछे दो तीन साइकल भी नजर आ रही है।

जीसका रंग लाल और सफेद है।

और बाहर गार्डनिंग की गे हुई है।

और बाहर की ओर पेड़ भी बहुत सारे नजर आ रहे हैं।

इसने काले रंग के गॉगल्स पहने हुए है।

मंदिर के बाहर एक व्हाइट कलर और रेड कलर का बोर्ड भी नजर आ रहा है।

एक चेयर भी नजर आ रही है और टेबल पे--

और दीवार पे कार्टून लगा रखा है।

और एंट्रेंस पे झाड़ जैसा एंट्रेंस बनाया हुआ है।

इस चित्र में चर्च जैसा दिख रहा है।

लेफ्ट साइड पे हमको नोटिस का एक बोर्ड दिख रहा है।

इस चित्र में इलेक्ट्रॉनिक चीज की एक शॉप नजर आ रही है।

एक रूम है वहां पे एक आदमी --

पड़ा नजर आ रहा है और टाइल्स भी आ रही है और एक स्ट्रेचर ।

रखा हुआ है और एक केमिस्ट दुकान भी नजर आ रहा है।

इस चित्र में दो फैंसी चेयर दिख रही है।

चित्र में आइसक्रीम की शॉप नजर आ रही हैं जहां पे बाल कृष्णा--

क्रीम शॉप पे का नाम जनता आइसक्रीम है।

इस चित्र मे एक जनरल स्टोर दिखा जा रहा है।

जिसमें एक बैग है एक किताब है।

और चित्र में एक हरे रंग की --

इस चित्र में एक रूम नजर आ रहा है।

नजर आ रही है और सोफा भी नजर आ रहा है।

जिसका रंग बदामी जैसा हैं और बहोत सारी बुक --

इसपी दिख रही है और एक लैपटॉप भी चालू पड़ा है।

और उस स्लाइडर भी तीन दिया है जिसका रंग--

हरा रंग वाली सर्कल वाली राइड है।

योगा कर रहे हैं और इसमें बहोत सारी--

योगा करने वाली मैट भी नजर आ रही है।

डांस क्लास है और उसमें बहुत सारे लड़के लड़कियां डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं।

और उसमें एक पीले रंग का बोर्ड भी लगाया हुआ है।

और घर पीले और केसरी रंग का नजर आ रहा है।

इस चित्र में एक स्कूल का क्लासरूम नजर आ रहा है।

और बीच में एक लड़का फोटो खिंचवा रहा है।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

पिंक है और उसपे टाइगर का चित्र भी लगाया हुआ है।

इस चित्र में एडवेंचर करने के लिए जा सके--

और यहां पे एक नदी बह रही है और दो तीन लोग भी हैं।

इस में बोर्ड पे एक में लॉर्ड ऑफ एडवेंचर एफ जेड का बोर्ड लगा हुआ है।

कचरा ले जाने के लिए है जो के अ हरे रंग का है।